और ऊपर चढ़ के नाचे ससरे वाला भी है।

कि हमार सब के सब सभ्यता पहले कइसन रहले हाँ--

और अगल-बगल में छोटा पौधा भी हई। फूल भी दिखाई देईत हई घना पेड़ भी दिखाई देईत हई।